शटर दिख रही है शटर के अंदर कार देख रहा है लेडीस दिख रही है जो पोस्टर को देख रहे हैं पीछे हाथ में कुछ--

उम् उ एक मशीन हैं उस पर बहुत सारे दो लेडीज खड़े हैं जैंट्स खड़े हैं पानी दिख रहा है और पहाड़ दिख रही--